यह एक नदी है जो तीन चार आदमी नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे भी हैं। शाम का टाइम है जिसमे धार्मिक स्थलीय से स्नान करना और इसमे एक नाव दिखाई दी जा रही हैं जिसमे तीन चार बच्चे भी बैठे हुए भी दिख रहे हैं जिनके --

कोई व्यक्ति जिसके टायरों को धो रहा है बताया जा रहा की कर को अच्छी से साफ किया जा रहा है।